यह एक मार्केट है जो रोड के साइड में लगा हुआ है औऱ यहां बहुत सारे अलग-अलग दुकानें हैं।

यहां एक हॉस्पिटल हैहॉस्पिटल में एक चौकी रखा हुआ है जिसमें एक स्कलटन लेटा हुआ है।